ब्राउन कुर्सियां मले हैं वो कुर्सियां पिंक कलर में है इधर थोड़े लोग सोफे हैं उधर थोड़े बैठे हैं बैठे हैं और दो लोग खड़े हैं और दो लोग चलते हैं।

ये चित्र में गवरमेंट ऑफ तेलंगाना ऑफिस ऑफ द इंजीनियर है रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट बोल के इंग्लिश तेलगु अक्षर से लिखो है।

बड़े बड़े रंगोली डले है।

और इधर दो लाइट्स है।

और थोड़े बैनर्स है फ्रिज है।

दो बेंचेज है बेंचेज का कलर ब्लैक है रेड है।

चित्र में बड़ा हाल है।

रैक में बुकस एंड ईट से जोड़े हैं।

चित्र में एक दूध का दुकान है।

दुकान में सारे फ्रिजर है।

और वो फ्रीजर में थोड़ा आइटम्स रखे हैं।

इधर ट्रे में खाने का बॉक्सा रखें हैं।

और बैनर्स है और इधर विजया तेलंगाना बोल के इंग्लिश में लिखो है।

चित्र में कपड़े का दुकान है।

ए कपड़ा में दुकान में कपड़े सभी फोल्डिंग कर कर कवर में डाले हैं।

उधर रैक का कलर रेड में है।

और इधर तरफ उधर तरफ दो तरफ एक्सीलरेटर है एक्सीलरेटर के पीछे बड़े है और दी थोड़े लोग हैं।

चित्र में काशी का मंदिर है ये काशी के मंदिर में थोड़े लोग हैं वो लोग बैठे हैं इधर चलते हैं देखते हैं।

चित्र में फूलों की दुकान है ये फूलों की दुकान के सामने कुछ फूल आ रखे हैं।

ये चित्र में बड़ा हाल है ये हाल में लाइट्स है वो लाइट्स ऑन में है उसका कलर थोड़ा गोल्डन शेड में है।

ये मशीन सभी ग्रे एंड ब्लैक कलर में है एक ब्लैक स्टूल में स्टूल है।

सीलिंग व्हाइट में है फ्लोरिंग ब्लैक कलर में है एक बड़ा ऐनक है।

एक ऑन में है एक करेंट वायर है।

चित्र में बहुत बड़ा मॉल है ये मॉल में बहुत सारे फ्लोर्स है फ्लोर्स में बहुत सारे लोग भी हैं वो लोग खड़े है और जरा लोग बैठे हैं।

दुखाना है और सारे बैनर्स चिपका का है सीलिंग लाइट्स है और लाइट्स सभी ऑन में है और इधर भी बहुत लोग है।

पहाड़ों के बीच में चढ़ेन डले हैं कुछ रोन के नीचे थोड़े छोटे छोटे पत्थरे हैं।

इ चित्र में वॉटरफॉल्स है।

वो बच्चे खेलते कूदते भागते हैं।

और इधर तीन वॉटरफॉल्स है।

और उसमें में पानी ऊपर आता है।

इधर बड़े बड़े छाड़ा है।

एक लाइट का पोल है।

और इधर घास भी है।

चित्र में हराली घास है।

दो झाड़ा के तरह है।

जो भी ब्लू एंड व्हाइट में है।

वह लड़का फोटो का लेता है।

और थोड़े बेंचेज खाली हैं।

इधर बड़े बड़े लाइट्स के दो पोल है।

और उधर बीच मे ग्राउंड में घास है।

इधर क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलते हैं।

और पूरे लोग देखते है।

चित्र में एक बैंक ए_टी_एम है।

पानी है वो भी वाइट कलर में है।

सूरज दुखता है वो भी ऑरेंज एंड येलो सेड में है।

पूरा काला काला है चित्र पूरा।

बड़े बड़े झाड़ा है बिल्डिंग है बादल है आसमान उजला है।

सीलिंग लाइट व्हाइट में है और ये ऑन में है दो सी_सी_टी_वी कैमरा है सीलिंग व्हाइट कलर में है फ्लोरिंग टाइल्स है वो भी क्रीम कलर में है।

है और बिल्डिंग है और उधर वॉटर टैंक्स भी है और बादल है आसमान उजाला है काले खंभा है।

स्तम्भो के उपर जय श्री राम तेलुगू अक्षर से लिखो है।